ये हरे कलर का छोटा सा पेड़ दिख रहा है ।

टेंट लगे हुए हैं जो की कुछ ग्रीन कलर के कुछ ब्लू कलर के कुछ डार्क ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ऊपर --

ऊपर पंखा लगा है लाइट जल रही हे।

ट्यूबलाइट लगी हे।

ऊपर से लाइट के वायर जा रहे नीचे वाइट कलर की पट्टी लगी हुई हे औ ब्लैक कलर की टाइल्स लगी है।

एक लड़का बैठा है जिसने लाइट ब्लू कलर की टी-शर्ट और डार्क ब्लू कलर की --

बहुत सारे जैकेट टांग रही हे या एक बाइक भी खड़ी है अंदर ट्यूबलाइट जल रही है।

यह एक मस्जिद दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की है इसमें ग्रीन कलर के --

झूला लगा हुआ है ऊपर ट्यूबलाइट वगैरा जल रही है।

एक और दंड लगा है उस पे एक झंडा लगा हुआ है।

एक लड़की बैठी है उसने येलो कलर की टी-शर्ट पहन रखी है एक स्विच बोर्ड दिख रहा है ।